कुछ लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे पिछे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

वहा एक खड़ी दिखाई दे रही है खंबा लगे हुए दिखाई दे रहे है पेड दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहा एक स्टोर दिखाई दे रहा है इसमे पूरा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहे साबुन के पैकेट भी दिखाई दे रहे है जे कुछ बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे है डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

पेड़ दिखाई दे रहे है बाउंड्री बनी हुई दिखा ई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का कलर नीला दिखाई दे रहा--